यहाँ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर --

सीढ़ी भी है एक पीछे एक ट्रक भी खड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ नजर आ रहा है।

तीन रंग के गुब्बारों से नारंगी हरा और सफ़ेद दो ती-चार लोग भी यहाँ पर बैठे हुए है।

और बहुत सारे लोग भी है काफी दुकाने भी है स्ट्रीट लाइटस जल चुकी है ।

पीछे भीम राव अंबेडकर जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और नमो बुद्धाय लिखा हुआ है।

यह एक मेन्स सैलून की दुकान हैं जिसका नाम बाल दाढ़ी है।

तीन लडकियां खड़ी हुवी हुईं हैं बच्चे नीली शर्ट और नीचे ग्रे कलर का कपड़ा पहनें हुए हैं।

नाई किसी का दाढ़ी बना रहा है एक टी.वी. भी लगा हुआ है दो लोग अपना अलग काम कर रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्राफ्ट बना रहे है कल रंग-बिरंगो के चार्ट पर रखे हुए है कई सारे बच्चे--